और ई जे व्यक्ति हैं माथे पे टोकरी में ईटा ढो रहें हैं और उधर चाला पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और --

ये मंदिर बनाया गया है जो हनुमान जी का मंदिर है।